ये है एक कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है।

ये है एक डॉल शॉप दिखाई दे रही है।

हाईवे के पास टोल्ड टैक्स है तथा --